तिलकामांझी भागलपुर। यहाँ पर एक बार जा चुका हूँ बहुत अच्छा है।

बहुत सारे लोग हैं और टेम्पो-एम्पो लगा हुआ है। एक रिक्शा आदमी चला रहा है। बहुत सारे आदमी हैं जो कि कंधे पर बैग लटकाया हुआ है।

जैसे लग रहा है कि यह बाथरूम बनाया जा रहा है।

और देखने में भी बहुत खूबसूरत है।